एक का शर्ट का रंग पिंक है दुसरे का ब्लू है।

बहुत सारे मशीन बॉडी जिम्स के लिए रखे गए हैं।

इस दृश्य में यूनान यूनैनियन बैंक नामक दृश्य दिखाया गया है। उसमें यूनियन बैंक का पोस्टर लगा हुआ है जोकि --

अ इस तस्वीर में एक बगीचा का दृश्य कराया गया है और इसके आसपास बहुत सारे बच्चे --

बिल्डिंग का रंग एल वाइट है। नीचे से ऑरेंज हो र येलो हो रखा है।

इस तस्वीर में मिलन ताकीज़ नामक कोई है इसमें जिसका रंग ब्लू और रेड है। उस् --